हरी-हरी घास है। कुछ पत्थर भी हैं |

बड़े-बड़े होटलो में सिर्फ दिखावा ही रहता है।

पहाड़ी एरिया का दृश्य जहाँ पे कुछ दर्शक पहाड़ के ऊपरी छोर पे जाने का कोशिश करते हुए --

पर बताना संभव नहीं है।

छोटा सा फंक्शन जहाँ शादी-विवाह की कोई रसम सी लग रही शादी विवाह का कोई रसम लग रहा है जहाँ पे पुरोहित कुछ मन कुछ मंत्र पड़ रहे है साथ में हल्दी वैगरह फूल वैगरह रखा हुआ है यहाँ पे।